ये चित्र मा हम तें एक बड़ी दुकाण दिखेण लगीं कुड़ा का भैर बिटि छा लगीं ठेला करन दिखेण लग्यां।

जैका भीतर हम त बहोत सारा नौनी नौनियाल दिखेण लग्यां जोंका अगाड़ी एक मेज लगीं लम्बी जैका एंच फुन कुछ किताबें रखीं बस्ता दिखेण लग्यां। दिखेण से लगदु यख यी पण छिन आयां पैथर फुणा हम त कुछ बोर्ड भी दिखेणा।

ये चित्र मा हम त एक बड़ी जगह छ दिखेण लगींजख मा कमरा दिखेण लग्युं जैका भीतर हम त दुई नौनियाल दिखेण लग्यां।